सामने एक विकेट अ खड़ा किया गया है सफ़ेद रंग की चॉक से लाइन को टाना गया है दो साइड में हरे रंग की छोटी -छोटी घासें उगी हुई है।

ये एक रास्ता है। रस्ते पे पीछे बिल्डिंग एक नई सी बन रही है और बहुत सारी स्टोन चिप्स हैं सामने एक नीले रंग की --

इ चार साइड का रस्ता है चार मुंह का लैम्प का पोस्ट है।

दूर एक रस्ता जा रहा है पीछे ऊपर बहोत बहोत अ बड़े-बड़े पत्थरों से पहाड़ बनाया गया है हरी-भरी घासें भी --

बहोत सारे लोग है जो खड़े है झरने के सामने कोई इन्सान पत्थर के ऊपर बैठ के फोटो खींचा रहा है।

ये एक पंडाल है पीछे गणपति जी का बड़ा-सा मूर्ति है सामने बहुत सारी लोग है एक इंसान बैठा हुआ है।